पौधे जो हैं वो फूलों के पौधे हैं सामने खड़ा होकर ओ पौधों को--

पीछे उसके बहुत सुंदर सा घर है लड़का जो है छोटा है पौधों को खड़ा हो के वो पानी दे रहा है।

गिफ्ट बहोत ही अच्छे हैं अलग अलग तरह के गिफ्ट लगे हुए हैं बहोत ही प्यारे लग रहे हैं।

ये एक कन्फेक्शनरी की दुकान है जिसमें फ्रिज लगा हुआ है काउंटर लगा हुआ है।

बहोत ही बड़ा शोरूम है बहोत ही बड़े बड़े डिब्बे जो है प्रोटीन के रखे हुए हैं।

तरह से कपड़े रखे हुए हैं बहोत ही कलर फुल कपड़े हैं अलग अलग तरह के कपड़े हैं।